ये देखने में फोटो अतिसुंदर और इमेजिंग है ये फोटो देखना चाहिए सभी को देखने में अच्छा लग रहा है।

यहां एक रोड है रोड पे बहुत सारे दो लोग है में यानी तीन लोग है यहां पे ऑटो लगा हुआ है बाइक लगा हुआ है ट्रक लगा हुआ है घर है तार बिछा हुआ है। --